और नमाज पढ़कर उनको सम्मान देते है।

यह एक बस की इमेज है बस सड़क पर चलाया जाने वाला एक वाहन है जिसे यात्रियों को ले जाने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

अधिकतर लोग यहाँ पर टहलने की लिए आते है घने-घने बड़े-बड़े पेड़ों को देखके उनका मन उत्साहित होता है।

यह एक पार्क है पार्क में बहोत सी चीजे होती है जो मन को लुभाती है बड़े छोटे सभी व्यक्ति--

और अधिकतर लोग ऐसे खंडर घर को भूत-बंगले का नाम भी दे देते है इसलिए लोगों को यहाँ जाने में बहोत ही डर लगता है।

सजावट पर ध्यान देते है इसलिए शादी हो उनको लोग ऐसा सजाने चाहते है की लोगों को देखने लायक रहे।

सब्जी का व्यवसाय करना बहोत ही लाभदायक बिज़नेस है क्यूंकि --

यह आलू है आलू एक प्रकार की सब्जी है यह एक बहार पौधा है इसकी जड़ को पोलिसी हिस्सा --

हमारी सब्जी और सलाद दोनों में इसकी जरुरत होती है।

कॉलोनी में अधिकतर कॉलोनी में पैसा इकट्ठा करके मंदिर बनवा जाते है जिससे अधिकतर लोग मंदिर आ जा सके।

और बहोत से लोग घूमने के लिए ट्रैन से सफर करके समुद्र के किनारे घूमने जाते है।

इस स्थान से दूसरे स्थान तक पहुॅंचाते हैं आजकल आज का युग --

क्यूंकि लड़की स्कूटी लेना बहोत पसंद करती है अपने कॉलेज जाने के लिए। वेह स्कूटी --

यह कोको कोला की इमेज है कोको कोला को सावधानी पूर्वक तैयार की गई सामग्री के अनूठे मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है।

इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है हिन्दू गाय को माता मानते हैं।